एक बगल में सफेद कलर की कार खड़ी हुई है।

यहां पर एक ई रिक्शा खड़ी हुई है उसपे एक बोर्ड लगा है।

एक ए_टी_एम है ए_टी_एम में--

यहां पे कुछ लोग बैठ के मांस वगैरह काट रहे हैं। यहां बहोत सारे लोग हैं।

यहां पे बगल में रोड है।

यहां पे छत पे एक टंकी है काली कलर की--